इस चित्र में एक मकान बन रहा है।

और इस मकान के बाजू-बाजू --

और एक तराजू रखा हुआ है।

और बाजू में एक शटर भी लगी है।

इस मैदान में हरी भरी घास एकदम प्लेन टाइप है और कुछ बैठने की व्यवस्था भी है।

बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि वाकिंग कर रही हैं।

और नीचे सोफा टाइप दिख रहे हैं।

शादी का प्रोग्राम किया गया है जिसमें बहोत सारी टेबलें लगी है।

और कुछ लोग खड़े हैं। आजू-बाजू पेड़-पौधे भी है।

पानी बहोत तेज से बेह रहा है।

और एक फाटक है जिसके बाजू से--

यह एक स्टेशन है जो कि कटनी जंक्शन है।

सामने एक ट्रेन खड़ी है और कुछ आदमी सामने से जा रहे है।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

इस चित्र में पूजा हो र--

इस चित्र में आकृति ज्वेलर्स की दुकान है इसमें महंगे गहने मिलते हैं।

एक ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी है।

रखे हुए है और एक आदमी भी खड़ा हुआ है जोकि सामान दे रहा है।

खिड़की है सामने एक मिट्टी का बर्तन है।

इस चित्र में बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रही हैं।

बाजू में सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं जो कि शायद सफाई कर रहे हैं।

और पैकेट का सामान बेचता है और--

जिसमें वेज का खाना रखा हुआ है लाइन से।

और यहां एक बाइक खड़ी हुई हैं जिसके ऊपर कोई बैठा हैं।